रेलवे ट्रैक पे से एक ट्रेन जाते हुए दिख रही है।

गाड़ियां खड़ी दिखाई दे रही है।

ब्रेकर का साइन लगा हुआ बोर्ड दिख रहा--

यहां फ्लावर से बने हुए--

यहां हमें बहोत से जिम की मशीनें दिखाई दे रही है।